निचे पेंदी मिट्टी दिखाई दे रही है। आसमान नजर आ रह है।

उसके ऊपर फाउन फव्वारा लगा हुआ दिख रहा है।

मेला नजर आ रहा है हरा मैट्रेस बिछा हुआ दिख रहा है नीचे।

झाड़ नजर आ रहा है। पास में नदी बहती हुई दिखाई दे रही है।

रोड के उस पार एक नीले कलर का शटर लगा हुआ दुकान नजर आ रही है।

नदी के ऊपर से पूल जाते हुआ दिखाई दे रहा है। लोहे की जाली लगी हुई दिखाई दे रही है पूल में।

पास में ऑरेंज कलर की माला नजर आ रही है गेंदे की हो सकती है।

पास में त्रिशूल दिखाई दे रहा है माला लटकी हुई दिखाई दे रही है इसपे।

बुलेट का शोरूम दिखाई दे रहा है।

खुला सा मैदान दिखाई दे रहा है रेलिंग बनी हुई नजर आ रही है हरी घास दिखाई दे रही है ।

उसके ऊपर एक चित्र बना है पोस्टर लगा हुआ दिख रहें हैं।

झाड़ के निचे एक कार खड़ी दिखाई दे रही है वाइट कलर की।

नीचे के साइड है जमीन रोड के ऊपर एक लेडीज खड़ी दिखाई दे रही है इसके ऊपर मुँह पर मास्क लगा हुआ है ।

जंगल लग रहा है बीच में से नदी बेहते हुए दिखाई दे रही है।